यहाँ पर एक मस्जिद भी दिखाई दे रही है यहाँ पर हरे रंग का पेड़ दिख रहा है यहाँ पर आसमान दिख रहा है।

यहाँ पर हॉस्पिटल है हॉस्पिटल मे बहुत सारे पंखे लगे है।

यहा पर कुछ घर दिखाई दे रहे है। यहा पर बादल दिख रहे है।

हॉल मे ए.सि. लगा हुआ है हॉल मे एक पंखा भी लगा है यहा पर टेबल लगी हुई है और साथ मे लाल रंग की गद्दियों वाला सोफ़ा भी लगा है यहा पर गुब्बारे दिख रहे है।

यहा पर एक फॅमिली रेस्टोरंट है। रेस्टोरंट के बाहर पेड़ लगे हुए है।